यह तस्वीर एक मैदान की है मैदान में चार लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं उनके सामने एक बॉल पड़ी है।

यह तस्वीर पानी की है देखने में ऐसा लग रहा है यह बहुत बड़े तालाब की तस्वीर है तालाब के पीछे पेड़ पौधे --